मुझे एक येल्लो कलर की बड़ीसी बिल्डिंग दिखाई दे रही बिल्डिंग की सामने कुछ लिखा हुआ दे रहा है सामने चैनल --

सामने कुछ खंबे दिखाई दे रहा है पीछे हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे है। जालीदार घर दिखाई दे रहा --

सामने सिडिया दिखाई दे रही है बगल मे एक दुकान दिखाई दे रही है और एक कोऑपरेटिव बैंक ए_टी_एम और बैंक दिखाई दे रही है।